इस दुकान में टेल लग रही है।

और नीचे एक हीटर रखा हुआ है।

और पीछे दीवाल पर एक ए_सी और एक पंखा भी लगा हुआ है।

और बेंच पर बहुत सी प्लेट और गिलास रखे हुए हैं।

मच्छीयों को लाल चद्दर पे के रखा है।

और कोट में एक कूलर रखा है।

यह आंख वाले डॉक्टर की बहुत अच्छी दुकान है।

यह बहुत सुंदर कलोनी है।

और उसके ऊपर एक कटोरी भी रखी हुई है।

और यहां पे बहुत से आदमी खड़े है।

यहां एक शादी का कार्य चल रहा है।

और पैर में चप्पल नहीं है नालियां साफ कर रहा है।

और सामने एक बड़ा सा पुल भी है।

यह बहुत सुंदर दुकान है।

इसकी छत पर दो छतरी भी है।

जंगल में बहुत से पेड़ खड़े हैं।

और पीछे महिला भी है।

और सीटों के ऊपर बहुत से फुहारे भी है।

और साइड में ऑरेंज कलर का स्टूल भी रखा हुआ है।

और नीचे बहुत सा घास भी है।